इमेज मे हमे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस मे पीले और लाल रंग के बलून दिखाई दे रहे सामने की तरफ एक टी_वी दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे हमे एक इमारत दिखाई दे रही है इमारत का कलर गुलाबी है जिसमे नीले रंग की दरवाजे और खिड्किया लगी हुई है सामने टेबल दिखाई दे रही है और दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे--

इस इमेज मे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है ये दुकान कपड़ों कि है और उसमे बहुत सारे कपड़े रखे हुए है कपड़ों का कलर --